यहां पे लाल कलर पीला कलर नीला कलर हरा कलर जैसे दिख रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है।

एक लाइट का खंबा दिख रहा है।

यह एक आदमी टोपी पहने हुए दिखाई दे रहा है।

इलेक्ट्रिक के खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहोत सारी मशीने रखी हुई दिखाई दे रही है।

पूरा लाइटों से सजाया हुआ दिख रहा है।

यह एक खुला मैदान है।

यहां पे तो भगवान की तस्वीर लगाई हुई दिख रही है।

वहां पे एक मंदिर दिख रहा है बगल में एक बिल्डिंग दिख रही हैं।

यहां पे इलेक्ट्रिक के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक पानी का टंकी भी दिखाई दे रही है।

अंदर बहोत सारी खाने की चीजें दिखाई दे रही हैं।

यहां पे काले कलर की कुर्सियां रखी दिखाई दे रही हैं।

यहां बिल्डिंग के ऊपर कुछ हरा कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर स्टेट सेंट्रल अर्बन बेंगलुरु लिखा हुआ दिख रहा है।

खिलता हुआ दिख रहा है।

वह दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक काली कलर के सोफा रखा दिख रहा है।

ऊपर लाइटें दिख रही हैं उधर एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

आगे छोटे छोटे हरे कलर के पौधे रखे हुए दिख रहे हैं।

यह एक खुला मैदान दिख रहा है।

यहां पे बच्चे लाल कलर पीला कलर काला कलर के कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं।

तीन चार सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

ऊपर कुछ लाइटें जगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पे एक बच्चों की खेलने की जगह दिख रही है।

पूरा हरा कलर दिख रहा है पीछे एक हरा कलर का नेट जैसे डाला हुआ दिख रहा है।

यह एक कक्षा दिख रही है।

यहां पे एक ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रही है। जिसके अंदर दो आदमी बैठे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत हरियाली दिखाई दे रही हैं।

बेड के सामने एक दरवाजा दिख रहा है।

चश्मा पहने हुए दिखाई दे रहा है गले में कुछ लाल कलर का धागा दिख रहा है।

यहां पे दो कारे के डेक खुली दिखाई दे रही है।

एक कोटक बैंक भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे सेंटर में गोल कुछ बनाया हुआ दिख रहा है।

यहां पर अन्य चीज जमाये हुए दिख रहे हैं।

एक दराज भी दिख रहा हैं पीछे एक--

यहां पे टमाटर प्याज लहसुन और सब मिल मिलते हैं।

पीछे एक पानी का फुकारा दिख रहा है।

यहां पे एक आदमी व्हाइट कलर का शर्ट पहने दिखाई दे रहा है कुछ पेपर उसके हाथ में दिखाई दे रहा है।

पीछे एक ट्रक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारी दिख रही हैं।

बाजू में थोड़े हरे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे एक लाल कलर का मैट नीचे दिख रहा हैं।

लाल कलर का एक खंभा दिख रहा है।

यह एक गोडाउन जैसा दिख रहा है।

मुझे एक ऑटो दिख रहा है।